पानी के बगल में कुछ करकट भी कुछ झाड़ी टाइप का है।

मुझे इस चित्र में कन्हैय्या हॉस्पिटल दिख रहा है।

मुझको इस चित्र में एक फर्नीचर का दुकान दिखाई दे रहा है और--

कुछ लोग लाइटिंग का अच्छा लाइटिंग हो रहा है ओर--

मुझे इस चित्र में एक मंदिर का गुंबद दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग बाइक पर बैठे हैं और कुछ लोग मंदिर के गुंबद को देख रहे हैं और--

मुझे इस चित्र में कुछ लोग डांस करते हुए कुछ लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए दिख रही हैं।

सर पर लाल कलर की टोपी पहीनी हुई है और कमर में लाल कलर का फंदा बांधे हुए हैं या--

और सामने कुछ उजाला भी है बहोत बड़े-बड़े हरे-हरे पौधे भी हैं।

टंकी पर दो ट्रक भी खड़े है और ट्रक --

मकान की रिपेयरिंग की जा रही है और कुछ ईंटे भी गिरी हैं और--

और नदी के बीच में एक खम्बा भी दिख रहा है।

कई कुकर बॉक्स के अंदर रखे हैं और कई कुकर बॉक्स के बाहर कांच के अंदर रखे गए हैं।

सरकने के लिए सीढ़ी भी लगाई गई है और पीछे--

मुझे भूखेरी नाम का एक स्टेशन दिखाई दे रहा है।

अपने हाथ में सफेद कलर का लिए है और वह--

मुझे इस चित्र में एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दे रहा हैं।